बहुत सारा सामान भी है।

बहोत सारे फूल से ये गाड़ी को सजाया गया है।

सीसा भी है और ऊपर में लाइट भी लगा हुआ है सामने में बोर्ड भी है।

यह एक ऑफिस है जो की बहुत सारे आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

सामने में बॉक्स रखा हुआ है।

लाइट भी है ऊपर में बहुत सारी लड़कियां का फोटो है।

एक घर है जो की बहोत बड़ा है और बहोत अच्छा भी है।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

अ पीला कलर का दुकान है पीला कलर का गेट है सामने में पोस्टर भी लगा हुआ है।

और सामने में एक ब्रेंच भी रखा हुआ है।

इधर मिट्टी भी है।

और इधर सामने में कार भी है।

और यहां पर बहोत अच्छे अच्छे फूल पेड़ और बड़े बड़े भी पेड़ हैं यहाँ।

यहां पर एक कुर्सी भी है।

और बहुत सारे आदमी घूम भी रहे हैं।

इधर सामने में एक बत्तख भी है और यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

यहां पर एक कार का शोरूम है जो की कार मिलता है।

सामने में पिलर भी है बहुत सारे मारुति गाड़ी है।

सामने में बाल्टी पानी रखा हुआ है।

लाइट भी है और हरा भरा पेड़ भी है।

बहोत सारा बड़ा पेड़ है।

यहां पर एक डॉक्टर का घर है जो कि बहोत अच्छा है और सोफा भी लगा हुआ है।

और डांस कर रहे हैं और बहोत बड़े बढ़िया बढ़िया मूर्ति भी है।

एक डराम भी है एक आदमी है जोकि ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है शर्ट भी पहना हुआ है।

यहां पर एक घर बन रहा है।

और यहां पर सामने में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

यहां पर एक स्कूटी भी है और झाड़ू भी रखा हुआ है बहुत सारा कुरकुरिया भी है ।